चारों और बलून लगाए गए हैं और यहां पर बहुत सारे लोग कुर्सीया में बैठे हुए हैं।

चारों ओर घर बनाए गए हैं और पेड़ पौधे भी बने हुए हैं।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

यहां पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी है और मंदिर की साइड में बहोत सारे घास फूंस और पेड़ हैं।

साथ मैं यहाँ पर एक ट्रेन आके रुकी हुई हैं और यहाँ पर बहोत सारे--

इस फोटो पे मुझे एक फोन दिखाई दे रहा है दुकान के बाहर बहोत सारे टायर वायर रखे हुए हैं।